यहाँ पे देवताओं का चित्र बना हुआ हे.

एक एल_इ_डी बल्ब दिखाई दे रहा है.

के एफ सी का बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक पहाड़ी इलाका दिखाई दे रही है.

जिसमें ब्लैक कलर के बहुत सारे पत्थर बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं.

कुछ पेड़ पोधे नजर आ रहे हैं आसमान भी खुबसू-

यह मान्य मान्यवर है कपड़े का शोप --

यह शादी का बरमला का स्टेज हे.

इसमें एक बेड रखा हुआ है जिसमें एक गोलाकार ब्लू कलर का कुछ रखा हुआ है.

और बोहोत सारे ऐ_सी लगे हुए है.

यह एक सेविंग पुल है.

यह एक पार्क है जिसमें डिजाइन कुछ ईंटों से रास्ता बनाई हुई हैं.

यह कुछ कोई फैक्ट्री है।

सात आठ व्यक्ति लोग हैं.

यह होटल राज हे.

पीछे साइड मे कैमरा लगा हुआ हे ऐ_सी भी --

जिसमे फ़लाइट्स स सबका लाइट भी दिखाई दे रही है।

नीचे में कलरफुल दिवारे हैं.